introduction to libreoffice impress पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
libreoffice impress के बारे में
विभिन्न toolbars
नया presentation कैसे बनाएं
presentation को सेव और बंद कैसे करें
मौजूदा presentation को कैसे खोलें
ms powerpoint presentation के रूप में सेव कैसे करें और
impress में pdf document के रूप में export कैसे करें
libreoffice impress क्या है
libreoffice impress libreoffice suite का presentation घटक है
यह microsoft office suite के microsoft powerpoint के समतुल्य है
यह free और open source सॉफ्टवेयर है
इसे बिना किसी प्रतिबंध के साझा संशोधित और वितरित किया जा सकता है
libreoffice impress निम्न में से किसी भी operating systems पर कार्य कर सकता है:
microsoft windows 8 या उच्चतम versions
gnu/linux operating system और
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और
libreoffice suite version 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है
default रूप से नवीनतम ubuntu linux os में libreoffice suite पहले से ही संस्थापित है
विशिष्ट version संस्थापित करने के लिए इस website पर libreoffice installation श्रृंखला देखें
अब सीखते हैं कि libreoffice impress कैसे खोलें
ubuntu linux os में नीचे बाएं कोने पर स्थित show applications icon पर click करें
search bar में impress type करें
प्रदर्शित सूची से libreoffice impress icon पर click करें
windows os में नीचे बाएं कोने पर स्थितstart menu icon पर click करें
search bar में impress type करें
प्रदर्शित सूची से libreoffice impress icon पर click करें
select a template dialog box खुलता है
यह विभिन्न inbuilt templates प्रदर्शित होते हैं आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं
मैं alizarin template चुनूंगी और नीचे दाएं कोने पर open button पर click करें
यह मुख्य impress window में एक खाली presentation खोलेगा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
impress window में विभिन्न various toolbars हैं
title bar menu bar standard toolbar formatting bar status bar और sidebar
जैसेजैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी हम toolbars के बारे में अधिक जानेंगे
अब हम अपनी पहली presentation पर कार्य करने के लिए तैयार हैं
slide में कुछ कंटेंट जोड़ने से शुरू करते हैं
textbox पर click करें जो click to add title दर्शाता है
अब इसके अंदर benefit of open source type करें और textbox के बाहर कहीं भी click करें
add textbox पर click करें जो click to add text दर्शाता है
यहां इसके अंदर a1 services type करें और textbox के बाहर कहीं भी click करें
अतः इस तरह slide में कंटेंट जोड़ते हैं
अब भविष्य में उपयोग के लिए presentation सेव करें
file को सेव करने के लिए standard toolbar में save icon पर click करें
screen पर एक dialog box खुलता है
यह name field में हमारी फाइन का name प्रविष्ट करने के लिए प्रेरित करता है
मैं फाइन का name sampleimpress type करूंगी
बाईं ओर पर मैं मेरी file को सेव करने के स्थान के रूप में desktop चुनूंगी
ध्यान दें हमारे पास नीचे दाएं कोने पर file type dropdown है
ड्रापडाउन पर click करें
यह file types या file extensions की सूची दर्शाता है जिसमें हम अपनी file सेव कर सकते हैं
libreoffice impress में default file type odf presentation odp है
odf अर्थात open document format जो open standard है
dialog box के ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
हम वापस impress window पर पहुंच जायेंगे
अब title bar में बदलाव देखें
सेव करने के लिए हम menu bar में file menu और फिर save विकल्प पर भी click कर सकते हैं
file menu में close विकल्प पर क्लिक करके presentation को बंद करें
अब हम libreoffice impress में एक मौजूदा presentation को खोलना सीखेंगे
वही presentation sampleimpress odp खोलें
libreoffice interface के बाईं ओर पर open file menu पर click करें
file browser dialog box खुलता है
उस स्थान पर जाएं जहां presentation सेव है
अब प्रदर्शित filenames की सूची में से sampleimpress odp चुनें
फिर open button पर click करें
sampleimpress odp file impress window में खुलती है
अब सीखते हैं कि impress presentation को ms powerpoint presentation के रूप में सेव कैसे करें
menu bar में file menu और फिर save as विकल्प पर click करें
screen पर save as dialog box प्रदर्शित होता है
नीचे दाएं कोने पर file type ड्रापडाउन click करें
हम dot ppt और dot pptx फार्मेट देख सकते हैं जैसा कि यहां सूचीबद्ध है
ये file फॉर्मेट बाद में ms office powerpoint application में खुल सकते हैं
powerpoint 2007365 pptx file format चुनें
file के सेल करने के लिए desktop चुनें
ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
यदि हम किसी any file format में file सेव करते हैं तो confirm file format dialog box खुलता है
ask when not saving in odf or default format विकल्प पर check करें
अंत में use powerpoint 2007365 format button पर click करें
file अब dot pptx file के रूप में सेव हो गई है
impress files को भी pdf format में exported किया जा सकता है
ऐसा करने के लिए standard toolbar में export directly as pdf पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम menu bar में file menu पर क्लिक करके भी ऐसा कर सकते हैं
export as submenu पर click करें
pdf options dialog box खुलता है
इस dialog box में हम pdf विकल्प को customize करने के लिए विभिन्न settings देखते हैं
default settings ऐसे ही रखें और नीचे export button पर click करें
स्थान चुनें जहां आप सेव करना चाहते हैं और फिर save button पर click करें
उस folder में pdf file बन जाएगी
इस presentation को सेव करें और फिर यहां दर्शाए गए अनुसार इसे and करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
विभिन्न toolbars
एक नया presentation कैसे बनाएं
presentation को सेव और बंद कैसे करें
मौजूदा presentation कैसे खोलें
ms powerpoint presentation के रूप में सेव कैसे करें और
impress में pdf document के रूप में कैसे export करें
नियतकार्य के रूप में
पहली slide में कुछ कंटेंट type करें
इसे practiceimpress odp name से सेव करें
ms powerpoint presentation के रूप में सेव करें
फिर presentation बंद करें
अब आपके द्वारा सेव की गई presentation खोलें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial से संबंधित कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
minute और second चुनें जहां आपके पास प्रश्न है
अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं
spoken tutorial project उत्तर सुनिश्चित करेगी
प्रश्न पूछने के लिए आपको इस website पर पंजीकरण करना होगा
spoken tutorial forum इस tutorial के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद